और सामने एक होटल है।

काफी लाइट भी टंगी हुई है अलग अलग डिजाइन की।

एक टेबल रखी हुई है उस टेबल पर काफी सारा सामान रखा हुआ है काफ़ी --

और यहां पर दो व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हुए हैं बाहर--

और यहां पर काफी सारे--

बॉक्से बने हुए है जिन पर शीशे के--

काफी सारी दुकानें बनी हुई है।

और इस दुकान के अंदर कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

रखे हुए है और कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

आस पास काफ़ी सारे व्यक्ति हैं।

जिन पर कुछ लिखा हुआ है।

और बच्चे हैं और यहां पर--

सामने एक ए_सी लगी हुई है।

और यहां पर कुछ ग्रील लगी हुई है।

काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

उन पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।